यहां पे एक तस्वीर है जहां पे सामने एक स्टेज बना हुआ है।

अ दो लड़कियां ऊपर वाले स्टेज पे हैं और एक लड़की नीचे है पीछे के साइड में एक पोस्टर लगा हुआ है ब्लैक कलर का।

तस्वीर है जहां पे सामने एक फ्रूट्स की शॉप है।

दुकान का कलर है वो नीले रंग का है और एक टेंपो भी बगल में खड़ी है।

यहां पे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिख रहे हैं और खेत खरियांन भी दिख रहा है।

हा पे एक तस्वीर है जहां पे सामने एक नेचुरल सीन है।

यहां पे सामने एक नदी बह रही है जोकि बहोत बड़ी और लंबी चौड़ी सी नदी है।

नीले रंग की भी लाइटें जल रही है नीचे के साइड में दो व्यक्ति उपस्थित दिख रहे है।

यहां पे लॉक लगाया गया है सभी में ताकि वह प्रोटेक्टिव रहें गिर ना सके और फर्श पे रखा गया है।

यहां पे बहोत सारी छोटी छोटी मशीने लगी हुई है।

यहां पे बड़े बड़े से सिलेंडर टाइप के बनाये हुए हैं जो की नीले रंग के हैं।

यहां पे एक व्यक्ति एक ब्राउन कलर का चेयर पे बैठा हुआ है।

यहां पे कुछ लोग बैठके खाना भी खा रहे हैं।

यहां पे एक तस्वीर है यहां पे सामने एक बस की अंदर की तस्वीर है।